ये इस इमेज में हमें फ्लैट दिखाई दे रहा है ये फ्लैट छै-साथ मंजिला है।

ये पिक किसी बगीचे की है जिसमें रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं ये छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए हैं जिसमें येलो और पिंक और ब्लू वाइट सभी कलर के --

मैं येल्लो कलर के पन फूल लगे इसमे पिंक कलर के फूल लगे हुए है और बोहोत सारे पेड़े भी लगे हुए है।

इस ईमेज में हमें बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं जो कई मंजिला हैं ये फ्लेट ते फ्लेट बने हुए है और यहाँ हमें एक ग्राउंड भी दिखाई दे रहा हैं जिसमे ग्रीन --

गमले रखे हुए दिखाई दे रहे है और उपर तार भी हमें दिखाई दे रहे है और आसमान दिखाए दे रहा है।